यहां पे इनकी फार्मिंग होती है सारे चिकनस एक झुंड में नजर आ रहे हैं और सारे चिकन व्हाइट कलर के हैं पीछे बहुत से बड़ी से खुला मैदान भी नजर आ रहा है जिसमें पेड़ है पूरी हरियाली है।

यह एक दफ्तर का दृश्य है जिसमें बहुत सारी मरकरी लगे हुए हैं बहुत सारा पंखा लगा हुआ है कुछ लोग खड़े हैं।

इस फोटो में आप बहुत ही विद्यार्थी को देख सकते हैं और कुछ गार्जियन को भी देख सकते हैं जो की एग्जाम देने आए हैं।

और कुछ लोग अपने कपड़े को चेक भी कर रहे हैं यहां पे कुछ सॉकेट भी है इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ फैन भी रखे हुए हैं।

कुछ लोग बैठे भी दिख रहे हैं कुछ लोग सामान खरीदते भी दिख रहे हैं।

जहाँ इस फोटो में दिख रहा है कि बहुत ही बड़ा सा पेड़ है जोकि बहुत ही सुंदर है और यहां पे बहुत सारे संत लोग है।

और कुछ लोग खड़े होकर देख रहे है एक बहुत ही पुराना बाउंड्री की तरह प्रतीत होता है।

यह दृश्य एक टेंट लगाया हुआ है इस फोटो में इस फोटो में एक बाईक भी है यहां पे कुछ अह वो है सीढ़ी भी हैं जिनसे टेंट लगाया जा रहा है।

और इस टेंट के परदे पर बहुत से प्रिंट्स भी है।

यह एक सैलून का फोटो है।

एक छोटा सा आईना पीछे वाले दीवाल पे है और इस सैलून का नाम है ज्योति सैलून ।

बहोत गुच्छे में धनिया रखे गए हैं बहोत सारे नींबू है।

जोकि रिसेप्शनिस्ट है और यहां पे एक बहुत ही रूम नजर आ रहा है जिसमें ए_सी लगा हुआ है तीन पंखे भी नजर आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े बल्ब भी नजर आ रहे हैं।

कुछ तरह तरह की समान रखी हुई हैं एक कुर्सी रखा हुआ है।

पानी में खूब खेल रहे हैं बहुत सारे यहां पे स्विंगस भी लगाए गए हैं और यहां पे बहुत सारा फिसलने वाला गेम भी है।

यह एक बहुत ही दुकान का फोटो लग रहा है जो करकट का दुकान है और इसके इसमें कोई भी समान नहीं रखा हुआ है।

यह एक जयमाला होने वाला सेटअप है जिसमें बहोत ही सुंदर तरीके से इसे डेकोरेट किया गया है।

यह एक वर्किंग साइट का फोटो है जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन्स वर्कर बैठ के देख रहे हैं और एक कंस्ट्रक्टर वर्कर जो है--

वो आग में कुछ जला रहा है अगल बगल छरी और बहुत ही रुखा जमीन नजर आ रहा है।

पीछे कुछ बलूंस भी लगाए हुए हैं और कुछ स्पॉट्स लाइट भी हैं एक डेस्क है जिसके ऊपर बहुत सारे प्राइजेज रखे हुए हैं।